यहां पे एक झरना दिखाई दे रहा है जिससे पानी बह रहा है।

कुछ लोग देख रहे हैं यहां पे आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसमें लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही है।

जो किताबें देख रहे हैं इनके हाथ में पेन भी है।

आस पास पेड़ पौधे हैं यहां पे फूल भी लगे हुए हैं।

इसके अन्दर बहुत सारे बैडमिंटन रखे हुए है यहां पे कुछ बोटले भी रखी है।

यहां पे कुछ डी_टी_एच के रखी हुए है।

इसके अंदर बहुत सारे डिब्बे पीपियां रखी हुई है।

यहां पे कुछ लीडे भी पड़ी हुई हैं ऊपर गत्ते भी रखे हुए हैं।

यहां पे एक सड़क है जो भूरे रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारी बॉटल भी रखी हैं केतली भी रखी दिखाई दे रही हैं।

यहां सब अलमारी में रखा हुआ है यहां पे कुर्सी दिखाई दे रही है।

नीचे भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है इसके अंदर लाइटे जल रही है।